प्लेस बोला जाता है वहां पे लोग आ जा सकते हैं।

आपको जिम करने की बहोत जरूरत है।

सात स्तंभ बने हुए हैं और एक आंटी फोटो क्लिक करा रही है पीछे पेड़ है आप देख सकते हो कि--